और भी दूसरे लोग एक अन्य रास्ते से होकर भीतर की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे है।

साथ ही कुछ इंजन का कुछ हिस्सा भी दिखाई पड़ रहा है और उसके दो पंख भी नजर आरहे है यह दृश्य भी बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है।